यहाँ सामने रोड पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। सामने एक अकैडमी है। उसकी साइड में काफी सारे घर नजर आ रहे हैं।

ये एक रास्ता है। यहाँ पर बड़ा सा एक गेट है उसके अन्दर कुछ व्यक्ति दिख रहे हैं।

ये एक वोटर पार्क है यहाँ सामने एक स्लाईड नजर आ रही है एक छत्री नजर आ रही है जिस के नीचे कुछ लोग बैठे है और पूल है जिस में काफी सारे लोग नाह रहे हैं।

यहाँ पर काफी सारे पौधे नज़र आ रहे हैं | एक बड़ा सा तालाब है जिसमें तीन लोग नहाते हुए नज़र आ रहे हैं।